ऊपर में खपड़ा लगा हुआ है जो की ब्लू कलर का है।

अगल बगल पोल दिखाई दे रहा है।

होटल की दीवार उजाले कलर की है।

वहां पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं प्लैटफ़ॉर्म पर।

बगल में एक पोला है जिस पर तार पर हो रहा है।

अंदर में एक लाल कलर की बाइक नज नजर आ रही है ऊपर पहला पहली मंजिल पर एक स्कूटी --

दीवार का रंग है पीले कलर का।